के नाम से कॉफ़ी बनाई जाती हैं यहं वातावरण बहोत टेस्टी है यहां का वातावरण बहोत ही अच्छा नजर आ रहा है पेड़-पौधे --

और यहां पे अलग अलग केबिन बना रखे हैं कंप्यूटर वहां पे लगा रखे हैं और वहां पर ये बहोत ही अच्छा --

रिप्ले के नाम से भी है और यहां पर कई अकाउंट ओपन करवाने आए कई अमाउंट जमा करवाने निकलवाने के लिए आए हुए --

छतरी बहोत बड़े बड़े छाते लगा रखे है वहां पे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं हैं और उसके सामने मैगी रूफटॉप के नाम से रेस्टोरेंट भी --

गोविंद जी का मंदिर है ये मंदिर बहोत अच्छा है और यह जयपुर में

डिजाइनदार फूल है इस सजावट करने के फ्लावर बने हुए हैं और यहां पर पॉट वगैरा भी मिलते --

तो बहोत ही अच्छा बना रहे हैं और यहां पर सर्विस भी की जाती है और पास में बाल्टी भी रखी हुई --

यह एक स्विमिंग पूल है यहां पर बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है और उसके चारों तरफ भी --

हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं वहां पर घर भी बना हुआ है और यहां पर बहोत ही पानी बहोत ही गंदा --

और ये टैटूस वगैरा की शॉप कपड़ो की शॉप डी मार्ट है और उसके ऊपर पिक्चर मॉल है भूत --

कुर्सियां वहां पे लगी हुई है और साथ ही साथ वहां पर बहोत अच्छा न नजारा वहां दिखाई दे रहा--

अच्छा एक डिजाइंड डिजाइनदार कैफे बना रखा है और यहां पे बैठने की भी सुविधा बहोत ही अच्छी --